इसमें बहोत सारे थान के कपड़े रखे हुए हैं।

जिसमे रंग बिरंगे कपड़े रखे हुए है पन्नी के अंदर।

बगल की जमीनें कच्ची मट्टी की हैं उन पर ग्रीन कलर की घासें उगी हैं।

लोहे की लंबी सी रेलिंग लगी हुई है।

और लंबे लंबे सफेद कलर के गमले हैं जिनके अंदर ग्रीन कलर के पेड़ लगे हैं।

जिसकी जमीनें कच्ची मट्टी की है उनपर ग्रीन कलर की घास उगी है।

जिसमें एक लंबा सा गुंबद बना हुआ है।

बगल में छाते के आकार की डिजाइनें बनी हैं उन पर लाइटें लगी हुई हैं।

एक आदमी बैठा है जो कि ब्लू कलर के शर्ट पहने हुए है। हाथ में पेन लिए है।

सामने वाल पतला सा रेड कलर का कारपेट बिछा है।

उसके बगल में बड़ा सा रेस्टोरेंट है जिसके बाहर की दीवारें शीशे की बनी हुई हैं।

लोहे की रेलिंग लगी हुई है पतले पतली।

और उसके ऊपर रेलिंग लगी है लोहे की जाली दार।

सामने सफेद पर्दों का टेंट लगा हुआ है।

जिस पर स्टेट बैंक ए_टी_एम लिखा हुआ है ब्लू ग्रीन कलर में और सफेद कलर में।

सामने दीवार है जो कि सफेद कलर की है और नीचे पतली पट्टियां रेड कलर की हैं।

यह एक बड़ा सा पेट्रोल पम्प है।

सामने वाल बड़ा सा एक बेड रखा हुआ है।

जो कि ब्लैक ब्लू और पिंक कलर और ऑरेंज कलर की है।

सामने वाल एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है।

सामने वाल अल्फाबेट लटके हैं।

सामने बहुत सारे गुब्बारे हैं जो कि ब्लू और सफेद कलर में हैं।

एक जे_बी_सी खड़ा हुआ है येलो कलर का है।

जमीनों पर टाइल्स बिछे हुए हैं खंभे लगे हैं।

इसमें बहुत सारे झूले लगे हुए हैं।

सामने वाले छोटे से बच्चों का झूला लगा है रंग बिरंगी कूदने वाला।

सामने वाल बड़ी सी एक बिल्डिंग है जो कि सफेद कलर की है।

लाइन से उनमें खिड़कियां लगी हुई हैं।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

नीचे वाल जमीनें इसकी कच्ची मिट्टी की है। उन पर ग्रीन कलर की घासें उगी हुई हैं।